एक बड़ा ही मनमोहक दृश्य। यहां पे गार्डन है। गार्डन में एक बूढी औरत जो कि पानी के फुहारें पेड़ो पे मारती दिख रही है।

यह फोटो एक अच्छी क्वालिटी के फोन से ली गई हैं जिससे की यह प्रतीत होता है की ये फो --

यह फोटो एक गाय की गाय की रहने की लग रही है जिसमे की एक काली कलर की गाय एक खाने की नदियां मे अपने मुंह को डुबो-डुबोते हुए कुछ --

दिखने से यह एक लाइब्रेरी लग रही है जो कि जिमे जिसमें कि बहुत सारे किताबें मौजूद है और यहां पे सभी बच्चों को फ्री में सुविधाएं भी उपलब्ध होती है ।